प्रतिमा में काफी सारे प्रतिमा दिखाई दे रही हैं छोटे छोटे में बैग में और ये पर आला कुछ बॉक्स बने हुए है उनके ऊपर बॉक्स बने दिख रहे हैं।

ग्रीन कलर की दिख रहे है ऊपर से वर्क करता दिख रहा है काफी सारी बिल्डिंगे दिख रही है आस पास में पिंक कलर की दिख रही है वाइट कलर की दिख रही है।

इस इमेज में एक स्टेचू बनी हुई है माता रानी की प्रतिमा बनी हुई है और भी सामने पास में दो स्टेचू बना हुआ दिख रहा है और यहाँ पर आस पास में कुछ छोटे-छोटे फ्लावर दिख रहे है कुछ फ्लाउअर --

एक दुकान दिखाई दे रही है इस्तेमाल पर खाने की चीजें राखी हुई है बोर्ड लगा हुआ है इस्तेमाल पर एसएम सुपर स्टोर लिखा हुआ है भैर पानी की बोतल पड़ी है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके सामने गेट बताओ।